देख सकते हैं। यहां पर बहोत सारे फ्रिज हैं।

का शो रूम है जहां पर इन्होंने अपनी एक बाइ--

देख सकते हैं ये--

जहाॅं पर बहोत सारी लाईट्स हैं और यहाॅं पर--

तो जैसा की आप देख सकते हैं यहां पर--

सकते है यहां पर--

तो जैसा कि आप देख--

बहोत बड़ी चीज लगाई --

देख सकते हैं यहां पर एक--

रेड चेयरस् लगी हैं और टेबल पर पेपर्स हैं।